इस इमेज में हमें एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ दिख रहा है साइड में एक लोगो बना हुआ है जिसमें--

ये कोई क्लास की फोटो लग रही है जिसमें बहोत सारे बच्चे बेंचों पर बैठे हुए हैं।

पड़ी है और पीछे हमें कुछ बिजली के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं अच्छा लग--

ये रेस्टोरेंट दिख रहा है और यहां पर चार पांच आदमी भी दिख रहे हैं।

ब्लैक कलर के हैं एक आदमी का थोड़ा सा हाथ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए दिख रहा है वाइट कलर की दिवालें दिख --

बहोत सारे झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कांच पर एक बहोत बड़ी बेंच रखी हुई है एक चेयर र--

साइड में एक खेत भी दिखाई दे रहा है ऊपर तार दिखाई--

हमें इस इमेज़ में बहुत सारे बल्ब मतलब कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है। शीशे--

मुझे दिखाई दे रहे हैं ये कुछ बॉटले रखी हुई है जिनका सभी का कलर ढक्कन ब्लू है और--

एक आदमी रोड पर खड़ा हुआ दिख रहा है जो कि पर्पल कलर की शर्ट पहने हुए है एक हाथ में घड़ी बांधे हुए है ब्लू कलर का जींस का पैंट पहने हुए है।

ये किसी पूजन की फोटो है जिसमें लेडीजे और जेंट्स बैठे हुए है आजू बाजू और--

और दो तीन पंडित खड़े हुए हैं और सभी जेंट्स लोग पीले कलर कपड़े पहने हैं लेडिस लाल कलर की साड़ी पहने हैं और--

यह कुछ पूजन सी होते हुए दिखाई दे रही है एक पंखा लगा हुआ दिख रहा है एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ दिख रहा है।

कमरे का गेटसा दिख रहा है जो खुला हुआ है नीचे व्हाइट कलर के टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनपर एक परछाई भी पढ़ रही है कांच--

ये किसी बगीचे की फोटो है जिसमें छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हुए हैं कुछ डिजाइन भी बनी हुई हैं कुछ बड़े से भी लग रहे हैं।